इस कमरा की दीवारों पर क्रीम कलर लगाया हुआ है।

टेबुल का ऊपर मुझे एक स्टूल भी दिखाई दे रहे है यहां लाइट बल्ब्स भी लगाया--

तस्वीर गाड़ी का अंदर से लिया हुआ है।

सामने में मुझे एक खाली बिस्तर दिखाई दे रही--

के सामने मुझे ये एक टेबल भी दिखाई दे रहे हैं कबर्ड के साथ।

तस्वीर एक बाजार जगह से लिया हुआ है।

का अंदर मुझे काला रंग का एक चेयर भी दिखाई दे रहे है।

ऊपर में मुझे एक आदमी मास्क पहना हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस कमरे की दीवारों पर एलो रंग लगाया हुआ है और सीलिंग पर सफेद रंग।

पोस्टर पर जनरल हॉस्पिटल आलो लिखा हुआ है।

पोस्टर में लामा तेनपाई ड्रोनमे म्यूजियम कम होम स्टे मोर्शिंग लिखा हुआ है।

रस्ते की बगा बगल में कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।

सामने में छोटे छोटे झोपड़ियां भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे बहुत सारा चेयर और टेबल नजर आ रहा है।

सामने की टेबल पर टिशू पेपर्स भी रखा हुआ है।

मुझे कंप्यूटर का आधा हिस्सा दिखाई दे रहे हैं सामने में मुझे टेबल का आधे हिस्से भी दिख रहे--

पीछे के दो आदमी ने लाल रंग का बेग बुखा है।

मुझे सामने में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है नीचे में गेट का नीचे एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे एक चेयर दिखाई दे रहा है यहां काउंटर का अंदर में मुझे और एक चेयर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां सी_सी_टी_वी कैमरा और लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहे है।

तस्वीर एक पार्क के आधे हिस्सा दिखाया है।

यहां मुझे एक बहुत बड़ा सा एक बोर्ड दिखाई दे रहे जिसमें केनारा बैंक लिखा हुआ है।

यह तस्वीर एक कमरा के काउंटर से लिया हुआ है।

कुल मिलाकर यहां नौ मछली है।

मुझे यहां एक इंसान का अंगूठा भी दिखाई दे रहे है।

दूर में मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

आगे में मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है।

गेट पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्प्लेक्स लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के आगे एक भी लगाया हुआ है।

के नीचे मुझे गार्डन भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें हरा भरा घास है।

और यहां सामने में मुझे एक कपबोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक जो ब्लैक कलर का पैन में रखे हैं और उसके सामने एक चाकू है।

यहां मुझे तीन गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

यहा शीशे पर आपातानि दिश ट्राईबल फूड लिखा हुआ है।

घर के अंदर में मुझे बहोत सारा चेयर टेबल दिखाई दे रहा है।

अंदर कि दीवारों पर सफेद रंग लगा --

तस्वीर एक दुकान के अंदर से लिया हुआ है।

इस रूम पर लाल रंग का कॉरपेट बिछाया हुआ है।

जी हां ए_सी भी दिखाई दे रही--

फेंसिंग पर रेनबो भी लिखा हुआ है।